ये तस्वीर एक दुकान की है बुक डिपो की जिसमें अ नई दुकान का उद्घाटन कर रहे हैं।

ये तस्वीर एक स्टेज की हैं जिसमें--

और पास में एक मैनेजर ऑफिस अह मैनेजर का--

जिसमें एक ट्रेन गुजर रही है और पास में कुछ पौधे लगे हुए--

इस तस्वीर में एक दुकान नजर आ रही है जिसमें व्हाइट और मैरून कलर के बैलून से सजाया गया है।

जिसकी काफी बॉडी बनी हुई है।

इस तस्वीर में काफी बड़ा एक जंगल नजर आ रहा है जिसमें काफी बड़ी--

तेल को आकर जाता हुआ नजर आ रहा है दो गाड़ियां खड़ी है वाइट कलर की जो अपना पेट्रो अं तेल पैक --

और आस पास कुछ लोग जाते नजर आ रहे हैं कुछ व्हीकल्स भी खड़े हैं।

इसमें उन्होंने अपना बोर्ड में मोबाइल नंबर भी दिया हैं।

और रुम की विंडो ओपन है जो दो विंडो हमें नजर आ रही है।

तो पास में किसी का घर है जिसमें पेड़ पौधे लगे हैं।

और बिल्डिंग के बाहर एक रास्ता बना जिसमें कुछ कचरा बिखरा हुआ है और एक लाल रंग का डस्टबिन है।

और रोड पे कुछ गाड़ियां बाइक व्हीकल्स चल रहे हैं।

ये तस्वीर किचन प्लेनेट की है जिसका बाहर काफी बड़ा बोर्ड लगा है।

सलून में काफी चेयर्स लगी हुई है कुछ काफी बड़े बड़े मिरर लगे हैं इस परफ्यूम स्प्रे बॉटल्स है कुछ--

अलग अलग डिजाइन शेप की कंगी कॉम्ब लगी हुई हैं।

वे जिसमें बच्चे शुरू करते हैं।

इस तस्वीर में छोटिया बच्चियां जो छोटे --

आ रहा है कुछ लोग बाहर चलते नजर आ रहे--

जो काफी शानदार और ब्यूटीफुल लग रहा है।